खड़ी हुई हैं सामने अंदर दुकान के ऊपर लाइट लगी हुई है दीवाल पर्पल कलर की दिख रही है और नीचे फर्श--

फ्रिज और वाशिंग मशीन रखी हुई है नी सामने एक स्टूल है।

बल्ला टंगा हुआ है नीचे पंखा और कुछ बॉक्स --